बीच में यहाँ पे रोड है रोड में दो बिल्डिंग और दो पोल टंगे हुए हैं।

ये एक रूम है रूम के अंदर बहोत सारे आदमी बैठे हुए कोई सोफे पे तो कोई कुर्सी पे एक आदमी चल रहा हैं बहोत आदमी खड़े हैं बीच में --

आमने सामने घर भी हो सकता है पेड़ है।

पे एक आदमी है यहाँ पे एक मेड लगा हुआ है ऊपर एक बल्ब है कयाँ पे पंखा भी है।

और किसी का भी ड्रेस कोई ब्लेज़र पहना हुआ है कोई स्वेटर पहना हुआ है।

ये एक होटल की कुछ पार्टी है यहां पे सर्किल सर्किल कुछ ब्लैक कलर का उसके ऊपर लाइटिंग है बगल में एक पेड़ है।

ये मार्केट में ठेले लगे हुए हैं ठेला अह पर एक आदमी नहीं है।

यहां पे बेंच पे बर बैठ के सब पढ़ रहे हैं सामने एक स्टूल है सब बैग ले के आए हुए हैं।

यहाँ पे एक सामने एक झोपड़ी है झोपड़ी ई के आ झोपड़ी पर दो पोशर टंगे हुए हैं।

ठेला के ऊपर एक पोस्टर भी टंगा ससारे ठेले के ऊपर पोशर टंगा हुआ है और साइकिल का ही ये लोग ठेला बना दिए हैं।

खिड़की के आगे एक पर्दा टंगा हुआ है यहां पे बेड ब्लैक कलर का है उसके ऊपर दो तकिया है बेड के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

बीच में एक रोड है रोड के बगल में बहुत सारे बिल्डिंग है रोड पे आदमी चल रहा है यहाँ पे ऑटो है पिकअप है।